इस फोटो मे हम देख रहे हैं की यह एक मंदिर है और यह त्रिकोण आकृति मे बना हुआ है।

यह एक होटल है जिसका नाम श्री बालाजी होटल है।

और इस पे दो आदमी चढ़ रहे हैं एक पीला टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए हैं और एक ब्लू जीन्स और काले टी-शर्ट शर्ट पहने हुए हैं।

यह एक मार्केट है और इसमें सब्जी का एक दुकान है इसमें गाजर गोभी कटहल आ बंधा गोभी पी सभाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर एक बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है उसके बगल मे एक गाड़ी है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैम्पस है।

यह एक दूकान है और इसके अंदर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है।